सामने एक बेशिंग रखा हुआ है नीले कलर की बाल्टी नजर आ रही है।

यहां बहुत से पौधे लगे हुए हैं जिनमें से कुछ सूख गए है और कुछ हरी दिखाई दे रही हैं।

दुकान के अंदर एक लाल बैनर लगा हुआ है।

टेबल के ऊपर बर्गर और पिज़्ज़ा रखा हुआ है।

दुकान के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है। यहां पे बहुत सारे व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

इसके अंदर बहुत सारे लाईटे लगी हुई हैं।

यह एक पक्षी है जिसका रंग सिल्वर काला में है।

पक्षी की चोंच और पैर का रंग पीला है।

पक्षी के नीचे पानी भी दिखाई दे रही है।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

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है।

यह एक बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर का दृश्य है।

जिसका रंग लाल नीला और काला दिखाई दे रहा है।